यह एक जिम सेंटर है। यहाँ पे रनिंग किया जाता है और सामने कंप्यूटर भी लगा हुआ है। इसमें स्क्रीन टच का है जो देखा जाता है इसमें की कितना रनिंग किये। बहुत ज्यादा सुंदर है और एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये। देखने में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा भी है और बहुत सुंदर भी है।